यहां अंदर साफ सफाई का बहोत ही अच्छे से ध्यान रखा गया है जोकि--

और यहां बस रेड कलर का इसमें हार्ट का शेप का लगाया गया है।

सामने एक बड़ा सा शहर भी दिखाई दे रहा है।

और यहां पर सामने एक आम का पेड़ भी दिख रहा है।

यहां बस सामने एक क्लास में टेबल और बेंच दिखाई दे रहा--